यह एक छोटा सा होटल है।

कसैली के पेड़ भी हैं।

रैक का रंग पीला है।

बहोत सारी लाइटें लगाई गई हैं एक स्त्री के हाथ में भारतीय झंडा है।

यहां पे बहोत सारे किचन से संबंधित सामान रखे गए हैं।

सॉस भी दिख रहा है।

टावर नजर आ रहा है।

आस पास बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ है।

सामने एक घर नजर आ रहा है।

घर का छत टीन का है एक वाटर टंकी भी रखा गया है।

पानी भी नजर आ रहा है।

बड़ी बड़ी बिल्डिंगे नज़र आ रही हैं एक बस नज़र आ रहा है।

यहां पे बहुत सारे डिब्बे रखे गए हैं टीन के।

गमले में भी फूल लगाए गए हैं कुछ घर नजर आ रहे हैं।

सामने कुछ दुकान नजर आ रहा है।

साइड में बकेट में बहोत सारे सामान रखें गए हैं।

बगल में एक पेपर नजर आ रहा है।

एक घर भी नजर आ रहा--

यह एक कच्ची सड़क है।

कुछ बड़े बड़े पेड़ हैं बहुत सारे--

ये एक छोटा सा खाली मैदान है।